इसमें कुछ मजदूर दिख रही हैं एक बड़ी क्रेन वाली गाड़ी दिख रही है जो संतरे रंग है।

फर्श भी दिख रहा है जो क्रीम का है।